पुतला बना कर यहाँ पर अ अच्छा लग रहा है।

और इस गार्डन के ऊपर ह इटे बिछाई गई है और उसके ऊपर एक बाइक खड़ी है।

एक बहुत बड़ा गेट जैसा बनाया गया है और कुर्सियां भी लगी हुई है दोनों तरफ लाइन मे बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाए गई है और दुर मे एक नदी दिखाई दे रहा है जिसके बीचों बीच मे एक आइलैंड जैसा है।